एक पीला-सा खंभा है। उसमे बोल जल रहा है। बहुत ही अच्छा सुन्दर दिखने में लग रहा है।

प्रमोद हेयर कटिंग सैलून लिखा हुआ है।

इसमें गणेश भगवान भी है।

लड़का फोटो खीच रहा है। पीछे से एक नाव भी आ रही है।

दो एक बुढा है। दो लड़का है। पूल में हरा-हरा ब्लू ब्लू कलर का लगा हुआ है।